ये एक एस. बी आई. ए. टी. एम. है और एक बैंक है जिसके बहार बहुत सारी गाड़ियां है एक आदमी एक छोटा सा बच्चा है ब्लू कार है।

और इससे ये गवर्मेन्ट बैंक है इसके पास बैंक ऑफ़ एस. बी. आई. भी है बैंक ऑफ़ पी. एन. बी. पी. एन. बी. बैंक भी है सारी बैंकस यही है।